--और यहाँ पर उनने चप्पल पहन रखी है यहाँ पे बच्चे काफी सारे पढ़ रहे है और बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट् बना रही है वह नीचे--

पीछे भी रिक्शा आ रही है यहाँ पर ये तीन आदमी खड़े हुए है यहाँ पर ये लोग ऑटो मे बेठने के लिए जा रहे है यहाँ पर ये ब्रिज के बहार खड़े हुए है कोई यहाँ पर आसपास पेड़ लगे हुए है यहाँ पर --

--और एक काफी एक स्वच्छ मस्जिद है यहाँ पे एक हरियाली गार्डन के बीचो बीच बनाई गयी ये छोटी सी मस्जिद है और आगे पत्थर लगे है यहाँ पर सभी नमाज़ पढ़ने आते है नमाज़ी लोग।